हर रोज पैसा निकालते हैं निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो --

रेट भी ज्यादा नहीं रखता है पर अच्छा से देता है।

गुफा है जो की देखने में बहोत अच्छा लग रहा है